टेबल के अंदर हमें एक फैन देखने को मिल रहा है।

दिवाल देखने तो मिल रहा है।

मुझे यहाँ पर नीचे में टाइल्स देखने को मिल रहा है वहाँ पे मुझे नीचे में प्लाई रखा हुआ देखने को मिल रहा है।

पानी देखने को मिल रहा हैपीछे में हम--

देखने को मिल रहा है।

में यहाँ पे साइड में एक पॉल देखने को मिल रहा है।

सामने में बास का पेड़ देखने को मिल रहा है।

ऊपर में पंडाल बनाया गया है पंडाल का रंग सफेद है।

हमें यहाँ पर नीचे में एक फर्श देखने को मिल रहा है उसके बगल में यहाँ पर बहुत--

ओर सब मे लाइट लगे हुए है देखने को मिल रहा है मुजे वहाँ पर सब --

प्ले ग्राउन्ड है यहाँ पे बोहोत सारे स्टूडेंट मिलने यहाँ पे हमें--

एक जनरेटर देखने को मिल रहा है इधर हमें बहुत सारे दमला देखने को मिल--

पे डस्टबिन भी देखने को मिल रहा है हमें इसके ऊपर एक बड़ा सा धर देखने को मिल रहा है जो सीसे ता खिड़की लगा हुआ है।